और यहाँ बोहोत से लोगों के कपड़े मिल रहे है और यहाँ एक स्टेच्यू --

यह एक कैफे दिख रहा है। कैफे अंदर से सजा हुआ है।

हाल में बहुत सी टेबल कुर्सीयाँ डली हुई हैं और ये अंदर से बहोत ही अच्छा सजा हुआ है।

और यहां लोग भी दिख रहे हैं। रोड भी गया हुआ है। गाड़ी भी खड़ी हुई है रोड में।

मंदिर के सामने की तरफ गेट लगा हुआ है। सामने से रोड गया हुआ है।

और यहां लोग भी हैं जो यहां शादी हो रही है। वहां आए हुए हैं और यहां दूल्हा - दुल्हन पंडित जी भी --

और यहाँ पर खरबूजा पपीता भी मिल रहे है सामने से रोड गया हुआ है और एक आदमी भी खड़ा हुआ है रो --

जैसा कि आप इस फोटो में देख पा रहे हैं यह लेविस का शोरूम दिख रहा है।

यहां बहोत से ब्लाउस कुर्ती मिल रहे हैं।

और यहां गार्डन भी दिख रहा है जो कि शादी का गार्डन दिख रहा है। गार्डन में चेयर टेबल डली हुई है।